लेकिन नहीं यहाँ पक्का उक्का सब चीज का सीढ़ी दिख रहा--

देख सकते है आप लोग भी उधर एक लड़का एक लड़की है घुमने गयी है किला।